एक टेबल भी है और एक लोहा के सीढ़ी भी है।

और एक बाइक भी रखा हुआ।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

सामने में एक सड़क भी है।

इस तस्वीर में एक दिल्ली बाजार दिखाई दे रहा है।

पास का एक साइड कुर्सियां भी रखा हुआ है।

और कई सारे प्रसाद भी रखा हुआ है।

इस तस्वीर में एक कुर्सी दिखाई दे रहा है।

मिरर के ऊपर बहुत सारे सामान भी रखा हुआ है। सामने में एक मैप भी रखा हुआ है।

और कई सारे लोग भी है।

इनके अंदर टेबल में रखा हुआ है और कुर्सी में रखा हुआ है।

टेबल के ऊपर कई सारे टिशू पेपर भी रखा हुआ है।

एक लैंप भी रखा हुआ है।

इस तस्वीर में एक बड़ा सा घर एक गैस दिखाई रहा है।

पास में कई सारी गाड़िया भी--

बिल्डिंग के दीवारें येलो कलर से पेंट किया गया है।

आसपास में कई सारे प्लेट में है।

सामने में कर्टन भी लगाया--

दो कुर्सियां भी रखा हुआ है।

इस तस्वीर में एक बिल्डिंग दिख रहा है।

बिल्डिंग के उपर कई सारे पोस्टर भी है।

नीचे की जमीन पर रेड और ग्रीन कलर के मैट लगाया हुआ हैं।